और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस बोर्ड में बहुत सारे चीज भी लिखे हुए है और इस स्टेज पे बच्चे भी है।

यह रिक्शा है और इसी रिक्शा को हमलोग ई-रिक्शा बोलते है।

यह मंदिर है और यह मंदिर देखने में बहुत ही अच्छा है ।

और साड़ी भी है सूट भी है ।